यहाँ पर मुझे एक टेबल दिखाई दे रहीं है।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

यहां पर मुझे एक कमरा दिखाई दे रहा है।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

पर मुझे एक घर दिखाई दे रहा है।